बच्चे दिख रहे हैं। कैची दिख रही है।

इसमें बेंच दिख रही है पेड़ पौधे --

इसमें गुब्बारे दिख रहे हैं। आदमी दिख रहे हैं।